बस लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है ट्रैवल पॉइंट ।

अ कुर्ता पहना है रेड़ कलर का।

और वो-ओ उधर पे टावर भी है और कई सारे काच ब्रिज लगे हुए है और एक घर भी है वो बन रहा है।

यहा पर एक होटल है जिसमे दो जन बैठे हुए है और तकिये रखे हुए है कांच का ग्लास रखा हुआ है।

यहा डैम है और डैम के उपर से नीचे पानी करो नीचे पानी जम गया है वहा पे एक पूल भी है।